इस फोटो में हमें बुद्धा टेंपल दिख रहा है।

यह टेंपल गोल्डन कलर का है।

बहुत सारे फूल के पौधे दिख रहे हैं।

सभी इंसान यहां से फूल तोड़ रहे हैं।

यह हमें इंडिया का एक झंडा दिख रहा है।

एक फैन लगा हुआ है एक इंसान दिख रहा है।

पीछे हमे कुछ इंसान दिख रहे हैं एक मूर्ति भी दिख रहा है।

एक इंसान ने काले रंग के कपड़े पहने हैं।

लाइटें भी लगी हुई है।

यह मंदिर का पैटर्न बहोत सुंदर है।

बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।

इस फोटो में हमें एक घर दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक स्वीट शॉप दिख रहा है।

यह एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

बहुत सारे दुकाने लगी हुई है।

पीछे में बहोत घर दिखाई दे रहे हैं।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

इंसान ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है।

पीछे एक कुलर खड़ा है एक जनरेटर दिख रहा है।

पीछे हमें केले के गच्छे दिख रहे हैं एक गेट भी दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक ऑफिस दिख रहा है ये एस_बी_आई का बैंक लग रहा है।

इसके टाइल्स सफेद रंग के हैं इसके सीलिंग भी सफेद रंग के हैं।

इस फोटो में एक एक और लैंड का फोटो है।

यहां बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक फैक्ट्री जैसा दिख रहा है।

एक घर दिख रहा है यह घर ब्लू कलर का है।

ऊपर नीला आसमान देख रहा है हमें ये खाली ग्राउंड दिख रहा है।